यहां पर बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ पोस्टर्स लगे हुए दिख रहे है।

और कुछ दुकानें दिखाई दे रहीं है।

यहां पर बहोत से लोग दिखाई--

एक टी_वी स्क्रीन दिख रही है।

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और यह मैगी खाते हुए दिख रहे हैं।

और कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बॅनर लगा हुआ दिख रहा है।

जिसमें लॉन्ड्री लैब लिखा हुआ दिख रहा है।

कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

जिसमें कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियां और टेबल्स दिखाई दे रहे हैं।

टाइल्स दिखाइ दे रही है।

कुछ आसमान दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा--

और दीवार पर कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक जूलरी शॉप दिखाइ दे रही है।